जैसा कि हम देख सकते हैं--

हरियाली है खुला नीला आसमान है।

खुश लग रहे हैं और रंगों से खेल रहे हैं रात का समय है।

पीपल और नीम का पेड़ है नीचे बड़ी बड़ी कुर्सियां और टेबल लगा है।

यहां बहोत सारा लाइट जल रहा है।